और पेंसिल है और दूध लीटर रखा हुआ है।

सामने सात आदमी और दो लेडिज हैं। एक जेंट्स के हाथ में फाइल है और एक लेडिज ने पिंक कलर का सूट पहना है।

यह किसी मशीन पर खड़े है। एक ने चप्पल पहनी --